वाइट कलर का दिवार है और खिडकियां --

एक जेंट्स फ़ोन से बात कर रहे हैं। ग्रीन --

एक मन्दिर है जिसमें --

बोहत अच्छे से पूजा करने के लिए जा रहे हैं। बोहत भीड़ है।

ये बैग है यहाँ पे जो ठीक हो रहा है। यहाँ पे --.

पीला कलर का माला पहने हुए हैं इसके हाथ में --.

बोहुत बड़ा एक ठो है जो कुर्सी को पहनाया गया है।

है इधर शॉप्स भी है बोहुत अच्छा --

हेल्लो गाइस ये बुक स्टोर है।